और यहाँ पे काफी ज्यादा सेफ्टी रहती है और ये एयरपोर्ट एन.डी.ओ. का है। देख सकते हैं यहाँ का स्टाफ लोग उसको चढ़ा रहे हैं।

ये एक ए.टी.एम. है। कैनरा बैंक का ए.टी.एम. है। यहाँ पे आते हैं पैसे विथड्राल करते हैं। यहाँ पे डिपॉजिट भी कर सकते हैं।

दूर दूर तक एक आदमी नजर नहीं आ रहा और गेहूं बहोत ज्यादा मात्रा में ल --

ये कोई का पिक है जहां पे पाँच हाँ पाँच तीन बन्दे है दो लड़कियाँ है। आपस में सेल्फी ले रही हैं जिसमें एक बन्दा चश्मा पेहना है।

यहाँ पे स्विमिंग पूल है। जो कि बहोत सारे आदमी यहाँ पे खेल रहे हैं कूद रहे हैं।